तथा तीन-चार बच्चों ने सफेद कुर्ता पजामा पेहन रखा है तथा पिछे पर्दा और --

पर्दा भी दिखाई दे रहा है रात का समय ऊपर तार भी नजर आ रही है और सामने लाइट भी दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रही है जो कि काफी लंबी है तथा उसके शीशे तथा उसकी दीवार शीशे की है नीचे दुकानें है गुब्बारे लगे हुए हैं।

सड़क पे पेंट किया गया है | भूरे और गुलाबी कलर का तथा सड़क के किनारे-किनारे छोटे-छोटे इट्टो की बाउंड्री भी बना रखी है सड़क के किनारे हरे-हरे घासे पौधे नजर आ रहे हैं ।

फोटो के अंदर ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है तथा कुछ पीले-पीले रंग का आसमान भी नजर आ रहा है।

नदी के अंदर बहुत पानी दिखाई दे रहा है तथा ऊपर की परछाई भी नजर आ रही है।

सोफे के ऊपर बहोत सारी तकिया भी है रंग-बिरंगी और बगल में एक बड़ा बेड भी है तथा पीछे की और सफेद रंग की दीवार है।

बेड भी बहुत शानदार लग रहा है और निचे कालीन हरे रंग की दिखाई दे रही है |

टावर भी लगे हुए हैं तथा सा टावर के ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा है चारों तरफ तथा एक तार भी नजर आ रही है।

यह फोटो में आप देख सकते हैं कि बीचो-बीच खुला समुद्र नजर आ रहा है और सामने की साइड सूरज दिखाई दे रहा है बो पी लाल कलर का।

इस खुले मैदान में काफी हरी-हरी घासे नजर आ रही है तथा किनारे-किनारे की ओर बाउंड्री है गुलाबी रंग की।

तथा इस साइड एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है जिसके सड़क के साइड जो की झोपड़ पट्टी भी दिखाई दे रही है की साइड खुला आसमान नजर आ रहा है |

ये फोटो के अंदर आप देख सकते है एक लोहे का ब्रिज नजर आ रहा है लोहे के ब्रिज के नीचे दीवारें नजर आ रही हैं जो की पिलर है छोटे-छोटे उसके सामने बहुत बड़ी नदी भी नजर आ रही है।

ये फोटो के अंदर देख सकते हैं तीन मूर्तियाँ रखी हुई हैं तीनों मूर्तियों को एक सुंदर सा राज पाठ दे रखा है तीनों मूर्तियों के ऊपर --

ये दीवार सफेद रंग की है आगे स्टील के ब्रेकर भी लगे --

यह फोटो के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर दीवार के छत पर नीली लाइट और सफेद लाइट जल रखी है नीली लाइटे काफी लंबी-लंबी हैं।

ए.सी. दिखाई दे रही है तथा बिच में कई डार्क नजर आ रहा है |

तथा इस सामने में एक भव सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है जिसकी खिड़कियाँ नजर आ रही हैं भवन के आगे काफी अच्छा --

तथा इस अलमाड़ी का कलर भूरे रंग का है जो कि लक्कड़ है तथा अलमाड़ी में चुटकने भी दो लगाई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर ताले लगे हुए हैं छोटे छोटे --

गुलाबी कलर का उसके बगल पेड़ है और भव मैदान नजर आ रहे है।

के आसपास काफी मिट्टी है।

यह फोटो में आप देख सकते है कि एक लाल कलर का भवन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सा बना हुआ है झंडा भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में आप देख सकते हैं एक सड़क है सड़क पे सड़क पे एक महिला जा रही है बैग टांग के तथा कुछ बाइक वाले भी जा रहे हैं सड़क के किनारे एक खंबा है।